लगा हुआ है और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आए हैं और देखिये झूले जो है --

यह देखिए यह चिल्ड्रेन स्कूल है और देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की गेट लगा हुआ है और देखिए इधर --

यह देखिए यह नदी है और देखिए इसमें बहोत सारे बत्तख हैं।